इस चित्र में हमें दो वर्कर नजर आ रहे हैं।

मशीनें रखी हुई हैं।

कुछ हमें डब्बे दिख रहे हैं।

काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ऊपर हमें घंटी दिख रही है।

ओरियो के बिस्कुट दिख रहे हैं।

ऊपर पंखा लगा हुआ है।

लाल सफेद फूल नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में एक जंगल नजर आ रहा है।

आसमान में बादल हैं।

इस चित्र में हमें ए_टी_एम नजर आ रहा है।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

काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग खड़े हुए हैं।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक दीवार दिख रही है।

नजर आ रहा है एक सोफा रखा हुआ है।

इस चित्र में एक बुटीक नजर आ रहा है।

हमें कुछ फूल नजर आ रहे हैं।

इस चित्र में हमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं लाइटें दिख रही हैं।

एक आदमी ने लाल शर्ट पहनी है।

एक आदमी ने हेलमेट लगाया हुआ है लाइटें दिख रही हैं।

काफी सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

बिजली के तार दिख रहे हैं।

एक हमें टेबिल नजर आ रही है।

कुछ हमें फूल नजर आ रहे हैं।

फूलों की माला डली हुई है।

इस चित्र में हमें विधानसभा दिख रही है।